इस चित्र मे काफी खुबसूरत सा बेहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है एक नदि बेह रही है जो की झरने से प्रतित हो रही है हरेभरे पेड़पौधों के बीच होती हुई चट्टानों को काटती हुई नदि काफी सुंदर सी लग रही है।

यहाँ हमे सामने हमे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के ऊपर डिश टीवी का छत्री लगी हुई है और एक पानी की टंकी है।

यहाँ हमे एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जो की बहुत खूबसूरत है कपड़े काफी अच्छे तरह से तय करके अपने अपने जगह पर रखे गये है।

टीन शेड्स के नीचे काफी सारे अँनिमल्स है और सामने कुछ हमे पेड्स दीखाई दे रहे है एक रेलिंग भी लगी हुई है जिसके उस पार जाना मना है जो की ग्रीन कलर से पेंटेड है।

पेड़ पौधे छोटे छोटे से पेड़ पौधे और कुछ पत्थरोंके बीच में जो काफी खूबसूरत सा लूक दे रहे है और ऊपर आसमान जो इस विव को --

सामने हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो की बजरंगबली की है ये एक हात में गदा और एक हात मे पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है और मूर्ति के पीछे के बॅकग्राउंड में हरे भरे पेड़ पोधे है और ऊपर टीन शेड है।

यहाँ सामने हमे कूछ एनिमल्स दिखाई दे रहे है जो की टिन शेट की छावमें आराम कर रहे है। सामने पानी पीने के लीये ऊनका व्यवस्था की गई है।

और जो वॉल है पैंट की गई है ग्रीन और रेड कलर से और रैलिंग लगी हुई है जिसके उस पार जाना मना है।

यहाँ हमे एक वॉटर फ्लो दिख रहा है वॉटर पार्क है ये जहा पर काफी सारे लोग स्विमिंग पूल मे नहा रहे है और इंजोय कर रहे है सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।